और यहाँ पर हमे एक ट्रैन दिखाई दे रही है जो की इसमे --

जो की इसके अंन अ मतलब इसके आस-पास से केबल्स जुड़ी हुई है जो की हमे --

और इसके आस पास हमे बहु बहुत सारे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है ।

यह एक हमे अ पूल दिख रहा है जो की यहाँ पर आने जाने वाले लोग --

जो की यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं गाड़ी खड़ी हुई है और कुछ लोग अपना काम करवा रहे हैं ।

और हमे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे सामने की ओर से और हमे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

जैसा की हम यहाँ देख रहे है की यह एक जिम है ।

के चॉकलेट केक है व्हाइट केक है और हमने हमे हर तरह के केक दिखाई दे रहे हैं ।

अ कॉफ़ी शॉप है और यहाँ पर हमे ज टेबल्स और चेयर्स दिखाई दे रही है व्हाइट और ब्लैक कलर की --

और उस सलून के अंदर एक जेंट्स है जो की यहाँ पर इसका शेविंग बना रहा है और एक लड़का है जो की अपनी शेविंग बनवा रहा है।

जैसा की हम यहाँ देख रहे हैं की यह एक बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड के यहाँ पर हमे --